यहाँ पे एक मकान का घर जो देखने में बड़ी अच्छा लग रहा है| मकान का अंदर में गेट भी लगा हुआ है।

यहाँ पे कई सारे हरे-भरे पौधा भी लगा हुआ है एक मकान का अथी बना गया है गेट गेट भी है सीढ़ी भी है।

एक फूल लगा हुआ है फूल का गाछी है देखने में बड़ी सुंदर लग रहा है गाड़ी भी है।